देखने में यह चित्र किसी फर्नीचर की दुकान का लग रहा है।

यहां पर हमें एक बेड दिखाया गया है।

जहां पर कुछ डस्टबिन लगे हुए हैं।

और एक लोहे का खंभा भी लगा हुआ है जिस पर कुछ पंछी बैठे हुए है।

यहां पर बहुत सारी महिले की लाइन लगी हुई है।

यह कोई फर्नीचर की दुकान है जहां पर कुछ बेड लगे हुए--

यहां पर कोई बड़ा घर दिखाया गया है।

चार शुगर के पैकीट रखे हुए है ट्रे का रंग काला है।

और बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

जिनके अंदर छोले प्याज और अचार के साथ कुलछा भी रखा हुआ है।

और पीछे एक द्वाल बनाई गई है।